स्टेज बनाया है यहाँ पे एक। बड़ा जैसा महल जैसा है बनाया है यहाँ।

मेंस पार्लर लिखी है इस पर।